गुफा के नीचे एक आदमी का सर दिख रहा है बहोत अंधेरा है।

यह तस्वीर एक ब्रिज का है।

उनपे सफेद रंग का सोफा रखा हुआ है।

इस फोटो में एक होटल दिख रहा है।

ये फोटो निशा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का है।

यहां बहोत सारा सोलर पैनल दिख सकता है।

यह फोटो किसी कोचिंग सेंटर का है।

यहां मे बहुत सारा बच्चा लोग सफेद रंग का कुर्सी पे बैठा हुआ है।

ट्यूब के साथ मुंडा और टेबल भी रखा हुआ है।

इस फोटो में दिख सकता है।

ये फोटो में फूल का दुकान है।

इस फोटो में एक लड़की नाच करते हुए दिख रही है।

घास दिख रहा है बहुत सारा पेड़ दिख रहा है।

घर के बाहर एक छोटा घर है जो नीला रंग का है।

ये फोटो शर्मा स्वीट्स के दुकान का है।

बाउंड्री जो लोहा से बना हुआ है।

मंदिर सफेद रंग का है।

मंदिर का ऊपर में लाल रंग का झंडा लहरा रहा है।

एयरपोर्ट के बाहर आदमी मोटरसाइकिल लेके आया हुआ है।

इस फोटो में कोई टेबल दिख रहा है।

यहां में पर्दा गुलाबी रंग का है।

घर मे बहुत सारा सोफा लगा हुआ हे।

प्रतिबोल एक पाइप पानी का दिख रहा है।